मुझे एक बहोत बड़ा सा हॉल दिख रहा है उसमे खूब सारी वाइट कलर की चेयर्स लगी हुवी है। उसमे कुछ लोगून बैठे हुए हैं।

मुझे एक जैन मंदिर दिख रहा है। जिसका नाम श्री श्री श्री एक वन जीरो जीरो आठ पार्श्वनाथ --